यहां पर फ्ला यहां पर पोर्ट वगेरह रखे हैं। प्लांट पोर्ट रखे हुए हैं। प्लांट लगे हुए जिनमे सों प्लांट हैं। कुछ प्रोटिन शेक पाउडर रखे हुए हैं।

यहाँ पर एक बुद्ध भगवान का स्टैचू बना हुआ है और कुछ मूर्तियां बनी हुई है म्यूजियम टाइप का है यहां पर ।

यहाँ न् बनी हुई हैं और जिसमे पेड़ लगे हुए हैं और र् बिल्डिंग के बाहर अं पेड़ लगे हुए हैं।